एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे काफी जेंट्स लोगों की गर्दी है और --

यह एक ऑफिस है और उस ऑफिस के सारी दीवारों के ऊपर एक फेन है एग्जॉस्ट फेन लगा हुआ है उस ऑफिस के सामने एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा है और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्किंग की हुई हैं।

यह एक मार्किट है उस मार्किट में हर प्रकार के --

यह एक बहती नदी है उस तरफ यह बहुत ही बड़ी नदी है इस नदी के बाजु में ऐसे हरे झाड़ लगे है पेड़ लगे हुए हैं और ऐसी दीवार जैसी बना हुआ है उस नदी के साइड में --